आसमान दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे कपड़े दिखाई दे रहे हैं ब्लैक ब्लू रेड पिंक कलर के।

इन्होने रेड कलर की साड़ी पहनी है चप्पल दिखाई दे रही है कुर्सी दिखाई दे रही है चद्दर दिखाई दे रही है ब्लू कलर का पिस्ता कलर का पिलर दिखाई दे रहा है तौलिया दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे एक ऑटो रिक्शा दिखाई दे रही है जिसमे ब्लैक कलर पुता हुआ है ऑरेंज और ग्रीन कलर भी पुता हुआ है येलो कलर भी पुता हुआ है एक और ऑटो रिक्शा दिखाई दे रही है जिसमें ब्लैक कलर पुता हुआ है।

पानी की बोतल दिखाई दे रही है खिड़की दिखाई दे रही है।

यहाँ पर जित्ता साइड दिखाई दे रहा है दो दिखाई दे रहे हैं ऑरेंज कलर के लाइट्स दिखाई दे रही हैं लोहे की रोड दिखाई दे रहीं हैं।

बिजली का खंभा दिखाई दे रहा है बिजली के तार दिखाई रहे है व्हाइट कलर के बिल्डिंग दिखाई दे रही है ऑरेंज कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

ये दुकान दिखाई दे रही है जिसकी दीवारों पे वाइट पेंट पोता हुआ दिखाई दे रहा है चिप्स की पैकेट दिखाई दे रही है कुरकुरे की पैकेट दिखाई दे रही है।

तालाब के चारों तरफ ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है।

रोड दिखाई दे रही हैं मशीन दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की पुश मशीन दिखाई दे रही है।

स्टूल दिखाई दे रहा है बोहोत सारी ट्रॉफी दिखाई दे है गोल्डन कलर की उनमें।

एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसपे येल्लो कलर पौता हुआ दिख दे रहा है रेड कलर का पौता हुआ दिख दे रहा है बिजली का खम्बा दिखाई दे रहा है बिजली के तार दिखाई दे --

यहाँ पे एक बस दिखाई दे रही है जिसपे वाइट और येल ब्लू कलर पुता हुआ दिखाई दे रहा है जिसपे ब्लैक कलर से राजपथ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

ग्रीन कलर की साड़ी पेहनी हुई है एक बैनर दे रहा है वाइट कलर जिसमें ब्लैक से कुछ लिखा हुआ दिखाई दे --

यहाँ पे एक टेबल दिखाई दे रही है उसपे रेड और वाइट कलर की दिखाई दे रही है पानी का गलास दिखाई दे रहा है एक प्लेट दिखाई दे रही है व्हाइट कलर की।

एक हॉल दिखाई दे रहा है जिसकी दीवारों पे वाइट पेंट पोता हुआ दिखाई दे रहा है दो सोफे दिखाई दे रहे हैं ब्लैक कलर के एक चेयर दिखाई दे रही है।

होम थिएटर दिखाई दे रहा है टी.वी. दिखाई दे रहीं हैं।